यह एक पानी का तालाब है इस तालाब में बहुत से पेड़ पौधे और हरी हरी घासें भी दिख रही है।

यह एक हाईवे रोड है इस हाईवे रोड पर बहुत बड़ा बाजार है।

यह एक कार का शोरूम है।

यह एक बहुत सुंदर मोर है।

और एक खंबा भी दिख रहा है।

एक आदमी लाल कलर का ट्रैक्टर चला रहा है।

यह एक बहुत ही सुंदर तेल पंप है।

और बाहर एक पेड़ भी खड़ा हुआ है।

यह एक जिम है जिम में बहुत सी मशीने रखी हुई है।

और कई सारे आदमी खड़े हुए हैं।

दरवाजे के सामने दो बहुत बड़े पेड़ भी है।

और बाईकें भी खड़ी हुई हैं।

और एक जीना भी दिख रहा है और बहुत सी कुर्सियां भी रखी हुई है।